यहाँ एक नदी पहाड़ है देखने में बहुत सुंदर दिख रहा है और बहुत अच्छा दिख रहा है और बहुत अच्छे-अच्छे नदी पहाड़ हैं और हरा- भरा दिख रहा हैं।

ये एक घर है घर बहुत अच्छा दिख रहा है सूंदर दिख रहा है और बहुत --

बहोत अच्छा

सीढी है सीढी बोहत अच्छा दिख रहा--

यहाँ बहोत हरा भरा दिख रहा हैं देखने में बहुत सुन्दर और अच्छा--

टंकी लगी हुई है पान खाने के लिए और दरवाजे सुन्दर दिख रही है और बाहर मे पेड़ पौधे दिख रहे हैं हरा भरा दिख रहा हैं सुंदर --